जो काफी सुंदर लग रहे है यहाँ और काफी ज्यादा लोग आए हुए है इस स्विमिंग पूल में--

नहाने के लिए और बहुत ही अच्छे दिख रहे है स्विमिंग पूल बहुत ही सुंदर दिख रहे है।

तकिया भी लगाये गए और बेड-शीट भी लगाये गए है देखने में काफी अच्छी व काफी सुंदर लग रहे है ये पलंग--

और बहुत ही ज्यादा भीड़ है यहाँ।

यहाँ अंडे भी बेचीं जाती है इस दुकान में काफी अच्छी दुकान है काफी बड़ा दुकान है ये।

यहाँ बहुत ही ताजे- ताजे मछलियाँ बेचीं जाती है दुकान में जिन्हैं खरीदने के लिए लोग आते है अक्सर इनके पास --

इस ट्यूशन में जहाँ बहुत ज्यादा बच्चे आते है यहाँ पढ़ने के लिए --

और यहाँ सब कोई पीने के लिए आते है बहुत ही नामी ये कोफ़ी शॉप है।

जो काफी अच्छे लग रहे है देखने में ये कोफ़ी शॉप --

और घूमते है यहाँ बहुत ही बढ़िया बनाया गया है ये पहाड़ी इलाका --

और काफी अच्छे लग रहे है चारों तरफ पौधा ही पौधा है और बहुत ही अच्छे दिख रहे है।

जो काफी सुंदर बनाया गया है ये रेस्ट्रोन --

यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाना मिलते है इस रेस्ट्रोरेंट पे जिन्हैं लोग बहुत ज्यादा पसंद करते है खाने में और इहा आके खाते हैं।